यह पहाड़ का नाम शायद चोर की पहाड़ है जो देवघर जिला में स्थित है यह पहाड़ एरिया में स्थित है।

हरेक तरह के फूल है यह फूल बहुत ही स स-सुगंधित होते है।

जो गांव से यह गाय ब्लैक दिख रहा है।

और तरह-तरह के पर प्रकार के पशुओं को गो सुविधा मिलती होगी पशु भी यहां पानी पी सकते हैं।

और यह खाने में काफी स्वादिष्ट होते हैं और यह चावल बहुत ही लंबे-लंबे चावल है जिसे खाने में काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग लगता होगा और इसके प्राइज काफी ज्यादा होता है।